की व्यवस्था है यहा पे बेन्चिस वेंचिस भी लग हुवे है काफी अच्छी जगह है और बहुत ही सुन्दर से बिच में घर को प्रोटेक्टर किया गया है ।